यहां पे एक नदी का फोटो दिखाई दे रहा है नदी में बहुत सारा पानी है।

दो तीन ऑटो दिख रही है और एक बाइक पे दो बंदे भी जा रहे हैं।